दो रेड कलर के चेयर भी रखे हुए हैं।

दीवाल से सटा हुआ एक छोटा सा गमला है जिसमें एक पौधा लगा हुआ है।

यहां पर एक कपड़े का दुकान का दृश्य दिखाया गया है।

कुछ आदमी सीढ़ी पर खड़े हैं और कुछ ऊपर में दरवाजे के पास खड़े हैं।

यहां पर एक लैब का दृश्य दिखाया गया है।

एक लड़का जिसने बैट पकड़ा हुआ हैं जो विकेट के पास है।

यहां पर एक ज्वेलर्स का दुकान दिखाया गया है जिसका नाम हरि ओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स है।

कान के बाहर बहोत सारी गाड़ियां भी खड़ी है कुछ गाड़ियों के ऊपर आदमी बैठे हुए हैं।

और बहोत सारे पुतले भी हैं जिसको कपड़ा पहनाया हुआ है।

और ऊपर में एक वाइट कलर का पंखा--

जिसमें से कुछ बड़ी है खड़ी है और बैठे भी हैं कुछ पेड़ भी दिखाई गए--

ये चोगा भी लगा हुआ है दोस्त नो साइड में और डी जे के ऊपर एक लाइट लगा हुआ है।

और पीछे भी बहुत सारे आदमी बैठे और खड़े नजर आ रहे है।

एक ब्लैक कलर का लाइट बोर्ड है जिसमें फॉर लिखा हुआ है।

पर बहुत सारे चेयर और टेबल है जो कि स्टील के बने हुए हैं।

बहोत सारे बर्तन भी दिखाए गए हैं।

यहां पर बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट खड़े हैं और बैठे भी है कुछ।

एक दरवाजा और एक खिड़की भी दिखाई गई है जिसको येलो कलर से पेंट किया गया है।

और ऊपर में बहुत सारे पंखे भी है।

यहां पर एक हॉल का दृश्य दिखाया गया है जहां पर बहोत सारे गमले में पौधे लगाए गए हैं।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

यहां पर एक दुकान का दृश्य दिखाया गया है जहां पर बहुत सारे भगवान की मूर्तियां बेची जा रही हैं।

ऊपर में रेड और वाइट कलर का कपड़ा भी टांगा हुआ है।

साइड में पीला कलर का भी टेबल रखा हुआ है।